और ये मर चुकी है इसमें तीन अलग अलग तरह के लोग खड़े हुए हैं।

यह पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि यह बहोत सुंदर --

और लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं।

यहां नीले रंग का टेंट लगा हुआ है और लोग सब यहां समारोह में आयोजित हैं।

इस पिक्चर में--

के बाहर काफी लोग दिख रहे हैं यह एक लाल रंग की बिल्डिंग है।

इसके तारे अलग अलग घरों में जा रही हैं।

घर की फोटो दिखाई दे रही है और ये शायद छत की है जिसमें--

हमें यह पिक्चर में एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

इस पेट्रोल पंप मे हमे--

जिसमें सामान रखकर लोड किया जा रहा है।

चर्च को देख रहे हैं जिसमें सफेद कपड़े पहने काफी --